और ऊपर एक बड़े से स्ट्रक्चर पे पी_वी_आर भी लिख रखा है ब्लू कलर का कोई पेपर है पीछे उस पे येलो कलर में पी_वी_आर लिख रखा है।

ये कोई शॉप की फोटो दिखा रखी है इसमें बहुत सारा सामान रख रखा है खान पीन की चीजें हैं बहुत सारी --

और इसमें एक सामने कोई वाइट कलर का छोटा स्टैचू भी रख रखा है एंड इसमें एक साइड में ब्लू कलर में आईबीटी का --

यह कोई इंस्टिट्यूट है जिसका नाम आई_बी_टी है और इसमें बहुत सारी लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं और इसमें दीवार में कुछ फोटोज और स्टिकर्स भी लगा --

यह कोई शॉप दिखा रखी है कोई मेडिकल शॉप है और इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजों की दवाइयाँ रखी है यह मेडिकल शॉप दिखा रखी है इन्होंने --

इसमें बड़ी सारी बॉटल्स भी रख रखी हैं और वैसी दवाइयाँ भी रख रखी हैं कुछ काँच की बॉटल्स भी दिखाई दे रही हैं।

एंड इसमें ये पशुओं की कोई दवाइयाँ भी रख रखी है जिसके ऊपर डॉग के स्टिकर बने हैं।

और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा है जिसके ऊपर तीन अलग अलग ट्रॉफीज रखी हुई हैं एंड उसके साई ट्रोफी के साइड में भी एक गमला रखा हुआ --

ये किसी घर की या फिर कहीं की फोटो दिखा रखी है इसमें दो बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं और --

एक कोई गाडी खड़ी है वाइट की गाडी दिख रही है और कुछ इसने बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है ऐंड ये एक वाइट कलर का ट्रक है कोई गा --

इसमें येलो कलर की फूलों की माला भी बनी हुई है एंड इसके सामने ही कोई शटर भी दिखाई दे रहा है ब्लू --

एंड इसमें सब कुछ लोगों के हाथ में ब्लू कलर की कोई गिफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर के कोई गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं एंड इसमें --

ये किसी मंदिर की फोटो दिखा रखी है और ये --

ये किसी घर की इन्होंने फोटो दिखा रखी है इस ये कोई बड़ा सा घर है वाइट कलर का ये घर दिखा रखा है।

एंड इसपे चॉकलेटी कलर का नीचे स्टरर भी लगा हुआ है और इसके ऊपर एक बड़ा सा बैनर --

ये ब्लू कलर का बैनर है एंड कुछ लिखा हुआ भी है एक चीज का कोई लोगो बना हुआ है।

मतलब यहाँ पे डेकोरेशन की जा रही है अलग अलग तरह के फूलों से यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है और एक ये कोई रेड कारपेट भी बिछा रखा है और ये दो सा --

ये कोई कपड़ों की शॉप दिखा रखी है ये कोई कपड़ों की शॉप की फोटो है इसमें बहुत तरह के कपड़े लगाए हुए हैं।

इसमें दो तीन कोट की सैंपल भी यहाँ पे लगा रखे हैं एक ब्लू कलर का कोट भी दिखाई दे रहा है एंड पीछे येलो कलर की भी कोई कोट दिखाई दे रहे हैं।

ये कोई फोटो इन्होंने दिखा रखी है जिसमें ये ग्रीन कलर के कुछ परदे से भी दिखाई दे रहे हैं--

एंड एट्सेटरा एट्सेटरा आई मीन जितने भी इनके मैन्यु है उन सब के आगे व्हाइट कलर में इन्होंने लगा रखे हैं।

ये किसी डेंटल केयर के सामने की बिल्डिंग के फोटो है यह कोई डेंटल केयर का बैनर भी लगाया हुआ है जिसके ऊपर फोटो लगा रखी--

चेकअप करते हुए कि कोई डेंटल केयर का हॉस्पिटल है जिसके ऊपर एवर --

ये किसी बेकरी की शॉप की फोटो इन्होंने दिखा रखी है ये कोई एक बड़ी सारी टेबल लगा रखी है जिसके सामने--

ये ट्रांसपेरेंट कोई टेबल है इनके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स के केक रखे हुए हैं-- .

एंड इनके ऊपर बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे भी रखे हुए हैं एंड और भी बहुत--

एंड इसके पीछे ये दो बड़े बड़े आयरन पिलर भी लगा रखे हैं जिनके ऊपर चार चार लाइट्स लगी हुई है एंड पीछे दो तीन बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है किसी के घर --

के पेन भी दिखाई दे रहे हैं और ये कोई ब्लैक कलर का कोई कैलकुलेटर है ये भी दिखाई दे रहा है ये कोई पेन की दुकान है।

और ये तीन चार कुछ लड़के भी दिखाई दे रहे हैं और ये बीच में पानी भी दिखाई दे रहा है एंड ये बहुत छोटे-छोटी घास भी दिखाई दे रही है --

ये कोई फोटो दिखा रखी है पठानकोट का ये कोई आश्रम है खानपुर का--.

ये कोई फोटो दिखा रखी है इसमें ये लड़की कुछ काम कर रही है एंड इस लड़की ने ऑरेंज कलर का सूट और वाइट और ब्लू कलर की चुन्नी डाली हुई है।

ये कोई फोटो दिखा रखी है इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं और यह कोई एक लड़की है--

जिसने शूट डाला हुआ है और ये ट्रोफी ले रही है इन टीचर से सामने ब्लैक कलर की बड़ी सी मैज भी है--

के ऊपर पानी की बोटल्स रखी हुई है टिशू पेपर की बॉक्सेस रखी हुई है फ्रूटी भी रखी हुई है एंड पीछे ये बड़ा सा-- कोई विश्व रक्तदाता दिवस का बैनर भी लगा--

ये कोई इन्होंने फोटो दिखा रखी है इसमें बहुत सारे पेड़ हैं बड़े-बड़े इसमें पेड़ दिखा रखे हैं और उनके बीच में छोटे-छोटे गमले भी रख रखे हैं।

छोटे पेड़ों के लिए गमले रख रखे हैं एंड पीछे फ्लावर्स भी है येलो कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं और इन पेड़ों के नीचे कलर भी किया हुआ है।

ये किसी घर के बाहर की इन्होंने फोटो दिखा रखी है और यह एक कोई टेबल रखी हुई है ग्रीन और चॉकलेटी कलर की टेबल रख रखी है--

पेट्स की फोटो भी दिखा रखी है डॉग कैट फिश एटसेक्ट्रा की बहुत सारी फोटोस दिखा रखी है--

एंड इसके नीचे इन पैट्स का बहुत सारा सामान भी दिखा रखा है शॉप में और एक इनमें से जैसे इनके लिए बैठने के लिए कुछ लगा दिखा रखा है एंड --

एंड इसके इस साइड छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं इसके किनारे पे--

ब्लॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं और ये टेबल्स भी दिखाई दे रही है एंड ये लड़का भी चेयर बना रहा है एक ये--

चॉकलेटी कलर की चेयर दिखाई दे रही है और इसके अंदर वाइट कलर का बैठने का है एंड इसके पीछे और भी चेयर्स और वुडन--

ये कोई इन्होंने फोटो दिखा रखी है यह सेंटर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है एंड इसके सारी बाउंड्री पे छोटे-छोटे घास और पेड़ उगे हुए हैं--

एंड ये कोई एक लड़का दिख रहा है जिसके पास कोई बाइक है इसकी बाइक को भी दिखाई दे रही है यहाँ पे और--

इसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं एण्ड और इसके ऊपर ही बहुत सारी ट्रोफी सर्टिफिकेट्स रखी हुई है--

ये इन्होंने कोई फोटो दिखा रखी है ये कोई व्हीकल है जिसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है ये दो वाइट कलर के--